यह तस्वीर एक पेट्रोल पंप की है।

एक टॉयलेट सीट भी दिखाई दे रही है और एक कुर्सी भी दिख रही है।

इस फैक्ट्री में एक स्कूटी और कुछ साइकल भी है।

ऊपर एक हमें फोटो दिखाई दे रहा है जिसपे माला टंगी हुई है और बच्चों के बगल में दो बोर्ड हैं।

यह तस्वीर एक रेस्टोरेंट की है रेस्टोरेंट में बहोत सारे लाइट लगे हुए हैं।

यह दुकान का नाम विनोद आर्ट्स पेंटर एंड प्रिंट्स है।

दुकान के ऊपर हरी रंग की रोशनी लटकी हुई है।

इस प्लेट के अंदर एक काटेनुमा और एक चम्मच दिखाई दे रहा है।

इस प्लेट के अंदर गोले गोले कुछ खाने की चीज है एक नींबू है।

यह तस्वीर एक पेट्रोल पंप की दिखाई दे रही है इस पेट्रोल पंप पे दो पेट्रोल टंकी लगी हुई है।

इस लड़की ने लाल रंग की फ्रॉक सूट पहनी हुई है और ये इसके पीछे कुछ कुर्सियां दिखाई दे रही हैं हमें।

यह तस्वीर एक छोटे से होटल की दिखाई दे रही है इस होटल के बाहर एक पेड़ है।

इस तस्वीर में हमें एक ड्राइविंग सिम्युलेटर दिखाई दे रहा है एक कमरा जिसमें सिम्युलेटर रखा हुआ है।

सिम्युलेटर के सामने एक कुर्सी रखी हुई है सिम्युलेटर के बगल में एक और कुर्सी रखी हुई है।

स्कूल के बिल्डिंग की पिलर हरे रंग की है और साथ ही साथ स्टेज के आगे बहुत सारे गमले रखे हुए हैं।

इस तस्वीर में हमें एक छोटी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

साथ ही नीचे एक तालाब है तालाब में पानी भरा पड़ा है।